दस रूपए वाली कप मिलती है।

और बॉय बॉय का शोरूम है ये। बॉय लोग --

स्टील प्लांट होगा या तो कुछ होगा।

ये लेडिस कपड़ों की दुकान है। ये बच्चों के कपड़े लेडिस कपड़े शोरूम में मिलते हैं। यहाँ लोग शोरूम से कपड़े खरीदते हैं। लेडिज लोग दिख रहे हैं साड़ी वाड़ी दिख रही है।

अरे यहाँ लकड़ी का सामान मिलता है। लकड़ी का सामान जो भी --

बहुत ही सुंदर पिक्चरर प्यार भारा है।